फोन के पोस्टर लगे हैं ग्लैक्स्की जे सेवन प्रो इंस्टा पेमेंट सैमसंग पे --

जो चल के उसी तरफ आ रहे एक आदमी सोफा लगा हुआ है सोफे पे आदमी बैठा हुआ--

ये एक स्टूडियो जिस पे लिखा हुआ नटराज स्टूडियो और बहुत सारे--

ये बहुत सारे शादी का घर है जहाँ पे एक कारपेट बिछा हुआ है ग्रीन कलर का कारपेट है कारपेट के बगल में पेड़ लगा हुआ है।

ये आधार कार्ड का ऑफिस है जहाँ पे एक आदमी बैठा हैएक आदमी कंप्यूटर पर काम कर रहा है जहाँ पे बड़े-बड़े कैमरास रखे गए हैं।

ये रूम को बहुत अच्छा से डेकोरेट कियावॉल का डिजाइन बहुत ही अच्छा हैडिजाइन पे फूल-पत्ती डिजाइन किया गया है वॉल पे--

ये एक चर्च है जहाँ पे समारोह किया गया हैएक टूल है और वहाँ पे टूल पे एक चादर बिछा है उसके ऊपर एक ग्लास है गिलास के --

गेंदा का फूल है। दो कुर्सी तीन दो तीन कुर्सी एक आदमी खड़ा हुआ है।

इतनी गाड़ी मुड़ी एक आदमी फोन पे बात कर रहा है एक आदमी बाइक से जा रहा है एक लड़का भीख माँग रहा है।

नया-नया पंखा है बड़े-बड़े टाइल्स लगा हुआ है लिज़ेरो टाइल्स हैब्लैक है व्हाइट है फेब --

ये एक जिम है जिसका नाम हैरीरैक योर फीट ब्रो इन रिलेशनशिप ।

वेद एक बड़ा टूल है बहोत सारी मशीन्स लगे हुए एक आदमी है जो पुश अप्स कर रहा है बहोत सारे पुशअप करने की मशीन्स रखे हुए है सामान इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है।

ये ऑफिस से बहुत ये ऑफिस है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हुए बहुत सारी कुर्सियां हैं टेबल्स हैं।

फैन से एक ए_सी लगा हुआ है बहोत सारे ट्यूब लाइट्स लगे हुए हैं।

और एक चेयर्स लगे हुए है बहोत सारे दोनों साइड मे टेबल्स कुर्सी लगी हुई है।

ये एक शॉप है बुक का जिसका नाम है श्री राजेश्वरी बुक कॉर्नर ।

गार्ड्स हैं अंदर में न्यू ओपनिंग में उनमें आम के तोरन लगाए हुए हैंआम के पत्ते के तोरन्स हैं।

इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पंखा है सी_सी_टी_वी कैमरा है लेने केस लाइनस दिए हुए हैं टी_वी है।

होली का समय है और बहुत सारे लोग हैं जो--

होली में पूरे अपने आप को रंगे से एक दूसरे से रंग खेल के--

बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं बॉक्सेस में बहुत बड़े बड़े डिब्बे रखे हुए हैं डिब्बे के अंदर बहुत सारे सामान है टी_वी एप्पला।

ये पीले करके डिब्बे है येलो में है रेड में है ऑरेंज में हैं।

ब्लैक सामान है स्क्रूप टाइवर्स है बहुत सी चीज --

बहुत चेयर्स कुर्सी लगे उन लोगों को अधका गया वाइट और ब्लैक ब्लैक और गोल्डन कपड़े से और बड़े बड़े बैग --

ये एक दुकान है जिसमें बहुत सारे सामानस रखे हुए छोटे-छोटे डब्बा --

एक सरसों का तेल है सनिटाइजर है पाउडर--

आसपास में पेड़ पौधे हैं पत्तियां हैं झाड़ हुआ सब है।

रेड कलर का लोग है बहुत सारा है और कार का बहुत अच्छे से सजा है उसको साफ किया जा रहा है वाइट कलर की कार है।

डॉक्टर से जो बात कर रहे है फैन लगा हुआ लाइट ए_सी प--

कुछ सी_सी_टी_वी कैमरास है ए_सी है और उसके बगल में एक केबिन है।

आसपास में पोस्टर लगे हुए हैं और एक पेड़ पौधे बहुत सारे आसपास में है फूल लगा हुआ है बहुत अच्छा।

उसके फूलों से सजाया गया उसके चक्कों में बहुत छोटे-छोटे--

ये एक शॉप है उसके ऊपर से कंडेटर बॉक्स है बॉक्सेस बनाए गए है जिसमें बहोत सारा डिब्बा है।

ये गैरेज है जिसको पाइप के थ्रू से कार को ऊपर ले जाया गया है इसको पानी से वाश किया जा रहा है।

ब्लू बैलून और रिबन लगाके सजाया गया है।

ये एक फाइव स्टार टाइप का होटल है डिजाइनिंग बहुत ही आलीशान बनाया गया है।

वहां पे बियर का दुकान है एक बड़ा सा टेबल रखा हुआ है उसमें रेल व बहुत सारे बियर के बोतल्स रखे गए हैं बोतल्स है।

टेलीफोन से दुकान से लाइट मध्यम सूरी का ढलने का समय बहुत अच्छा लग रहा व्यू ।

एक ऑफिस है जिसका नाम है द नाइनटीन --